शायद ये बिकानेर का है या उसके आसपास के किसी गांव का है।

जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां एक लाइब्रेरी जैसा कुछ दिख रहा है या फिर ये एक कोचिंग सेंटर है।

जैसा की आप देख पा रहे हैं होटल के रूम में बेड पूरा बिखरा हुआ पड़ा है साइड में टेबल है स्टैंड --

ये एक सीमेंट वाली मशीन लग रही है जिसमें सीमेंट को मिलाया जा --

ये दृश्य एक रेस्टोरेंट का लग रहा है जहां पर डायनिंग टेबल्स लकड़ी की है।